सफेद रस्सी से जाली जैसा बना हुआ दिख रहा है।

इंग्लिश में यु.आई.एस.ए.यु. ।

इसके ऊपर में हल्के काले रंग से राउंड में और पट्टे मे डिज़ाइन बनी हुई --

नीचे इस जमीन पर हरे रंग की घास लगी है।

ग़ दरवाजा भी सामाने देखा जा सक --

पीछे के तरफ़ कुछ महिलायें खड़ी हैं।

यह बड़े-बड़े लाल पत्थरों से तैयार है।

सामने में कुछ सूखे पेड़ और झाड़ियां दिख रही है।

और सर पे कप पगड़ी बाँध र --

पीछे शंकर जी देवी जी और हनुमान जी का मूर्तियां बड़ी-बड़ी दिख रही है।

इमारत का रंग सफ़ेद है इसमें प्लस का निशान बना है।

उसने काले कपड़े पहेन रख --

शरीर के ऊपर एक डार्क नीले रंग का --

ऊपर एक ट्यूब्लाइट भी जल रहा है।

ऊपर छत पर डिज़ाइन बनी हुई है।

और अलग-अलग रंग पुता हुआ है।

ऊपर का छत सफेद रंग का दिख रहा है।

उसपे लाल अक्षरों से कुछ लिखा है।

बगल में कीचड दिख रहा है।

मुंह पे सफेद मास्क लगाया है।

ऊपर भी एक वायर काले रंग का लटका दिख रहा है।

सामने एक बाबाजी जाते दिख रहे हैं।

वेट मशीन जैसा लगा है।

नीचे और भी सफेद रंग के पैकेट रखें।

चेयर हम इसमे हम देख सकते है।

सामने की दीवार पर लंबे-लंबे काँच लगे हैं।

सामने के तरफ एक बड़ा सा दरवाजा दिख रहा।

दीवार पर लटकी हैं यह सभी एल.ई.डी. एल.सी.डी. टी.वी. याँ हैं।

सफ़ेद रंग कि ईंटों से बनी एक लंबी दीवाल बाउंड्री वाल दिख रही --

ऊपर नीले रंग के रड के सहारे सफेद रंग की पट्टी पर कुछ लिखा है।

यहां बहुत सारे हैं बीच में इसमें गोल-गोल बना हुआ है।

इसमें एक बड़ा सा मकान हम सामने की तरफ देख रहे हैं।

ऊपर दो छत जैसे बने हैं।